एस_एम_सी कॉलेज हाजीपुर है जिसके सुक जिसके हिन्दी सुकदेव मुखानलाल महाविद्यालय है।

एक आदमी है जो पुनेली रंगा कुर्ता पहन के खड़ा है इसके पात एक पत्तों का वशा है जिसमे बहुत सारे लंबे लंबे पत्ते निकले हुए है।

के उपर भी जो चाली है वो टीन का बना हुआ चाली है। नीचे पूरा कूट से बिछाया हुआ है।

साथ ही इसमे गुलाबी कपडे का भी इस्तेमाल किया गया हैं।

गेट के बाहर बहुत सारी खानेपीने की दुकान भी बनी हुई है यहा पर लोग खानापीना खरीदके खा रहे है। बाहर बहुत अन्य अन्य सामानोंके भी दुकान बने हुए हैं।